रेसीडेंसीयल पब्लिक स्कूल और बगल मे गाड़ी खड़ी हुई है | वहाँ पे ईटें रखे हुए हैं छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं बगल मे बहुत बड़े बड़े पौधे लगे हुए हैं |

यहाँ पे एक बड़ी सी बिल्डिंग पर नजर आ रही है थ्री फोर फ्लोर की और उसमें रेलिंग बनी हुई है। लोहे की बिल्डिंग को व्हाइट कलर से पेंट किया गया है और --

पिछे बिल्डिंग नजर आ रही है। ऊपर आसमान दिखायी दे रहा है। पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। तार है बहुत सारा मोटा सा काले कलर का।

हमे यहा पर एक बड़ा बिल्डिंग नजर आ रहा है जिसमे कोई पीले रंग का पैंट हुआ है और इन और ग्रीन कलर का बार्डर है।

बहुत सारे गेट वेट भी मतलब बने हुए नजर आ रहे हैं। सामने एक बिल्डिंग बनी हुई नजर आ रही है जो --